यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है और ऐसा लग रहा कि बारिश का मौसम क्योंकि आसमान में बहुत बादल छाया है एक येल्लो एण्ड व्हाइट कलर की ट्रेन है ।

यहां के सामने वाले स्टोर में रेड व्हाइट फिर रेड फिर ग्रीन येलो --

और पीछे का बैकग्राउंड कलर बहोत ज्यादा ही--

पीछे से एक बाइक भी आ रही है जिसमे--

और पीछे बहुत सारे पेड़ हैं लगता हैं ऐसे मैंगो के हैं।

ये नहीं पता कि कौन सा यहां पर सीनरी एरिया बहोत अच्छा बनाया गया है।

कृष्णावर हैं या तो फिर लॉर्ड बुद्धा हैं और नीचे ये जो ब्लू कलर की टाइल्स लगी हुई हैं ऊपर ये --

और यहां पे ढेर सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने ब्लैक कलर की जैकेट साम थोड़ी बहोत स्कूटर जा रही है।

कॉफी बाय क्या लिखा है ये इतना ही दिखाया गया है और यहां पर शायद से पुलिस स्टेशन है।